यहां तो बैठने के लिए बंचस ज्यादा है और वहां एक वाइट बोर्ड ज्यादा बड़ा वाइट वाइट बोर्ड है।

ये तो एक छत जैसी लग रहा है यहां तो तीन लोग बैठा हुआ है।

यहां एक सूप भी दिखा रही है और वहां आकाश है ना ज्यादा अच्छा दिखा रही है प्लेन नीली रंग में दिखा रही है।

फिशर मैन वो मछली वाला है ना वो मछली को काट रही है और उसके हाथ पे येलो कलर गलोवेस --

ये तो एक बिल्डिंग है ज्यादा बढ़िया बिल्डिंग है विला जैसी है एंट्रेंस एलिवेशन दिखने का दिखने के ज्यादा अच्छा दिखा रही है यहां प्रहारी भी है इसका--

वाइट कलर में और वहां ब्लू --

ये तो एक रेस्ट होटल जैसी लग रहा है यहां तो टेबल्स है--

ये एंबियंस ज्यादा क्लास जैसे लग रहा है।

फोटो रखा हुआ है उसको तो माला अ अलंकार किया हुआ है वहां तो बैलूंस ज्यादा है और--

अं कार हैं ओ एक इनोवा भी है हो तो व्हाइट कलर का नहीं हैं।